मेरे प्यारे देशवासियोनमस्कार अक्सरमन की बात में आपकेप्रश्नों की बौछार रहती है
इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए मैं आपसे प्रश्न करूँ
तो ध्यान से सुनिए मेरे सवाल
ओलम्पिक में इंडिविड्यूअल गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था
ओलम्पिक के कौन से खेल में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं
ओलम्पिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं
साथियो आप मुझे जवाब भेजेंन भेजें पर माइगोव में ओलम्पिक्स परजो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे
ऐसे बहुत सारे प्रश्न MyGovके रोड टो टोक्यो क्विज में हैं
आप रोड टो टोक्यो क्विज में भाग लें
भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है हमारी टोक्यो ओलम्पिक्स के लिए अब क्या तैयारी है ये सब ख़ुद जानें और दूसरों को भी बताएं
मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस क्विज कॉम्पिटिशन में ज़रुर हिस्सा लीजिये
साथियो जब बात टोक्यो ओलम्पिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लेजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया
जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था
बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था
मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलम्पिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ीओलम्पिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तोआपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है
वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था
मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे
हम लोगों ने एक नाइट मराठों का उद्घाटन किया था
उस समय उनसे जो गपशप हुई खेलों के बारे में जो बात हुई उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी
हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है भारत का गौरव बढ़ाता रहा है
साथियो जब टैलेंट डेडिकेशन डिटरमिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैम्पियन बनता है
हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटेछोटे शहरों कस्बों गाँवों से निकल करके आते हैं
टोक्यो जा रहे हमारे ओलम्पिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है
हमारे प्रवीण जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहाँ पहुंचे हैं
प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के एक गाँव के रहने वाले हैं
वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं
उनके मातापिता मज़दूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहलाओलम्पिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है
ये सिर्फ़ उनके मातापिता ही नहीं हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है
ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी
नेहाTokyoजा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं
उनकी माँ और बहनें साईकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का ख़र्च जुटाती हैं
नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफ़र भी उतारचढ़ाव भरा रहा है
दीपिका के पिता ऑटोरिक्शा चलाते हैं और उनकी माँ नर्स हैं और अब देखिए दीपिका अब टोक्यो ओलम्पिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज़ हैं
कभी विश्व की नंबर एक तीरंदाज़ रहीं दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामनाएँ हैं
साथियो जीवन में हम जहां भी पहुँचते हैं जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है
संघर्ष के दिनों के बाद मिली सफलता का आनंद भी कुछ और ही होता है
टोक्यो जा रहे हमारे खिलाड़ियों ने बचपन में साधनोंसंसाधनों की हर कमी का सामना किया लेकिन वो डटे रहे जुटे रहे
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है
प्रियंका के पिता बस कंडक्टर हैं
बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को मिलता है
इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेसवॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था
अब आज वो इसकी बड़ी चैम्पियन हैं
जावेलिन थ्रो में भाग लेने वाले शिवपाल सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं
शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है
इनके पिता चाचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं
परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलम्पिक्स में काम आने वाली है
टोक्यो ओलम्पिक के लिए जा रहे चिराग शेट्टी और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी प्रेरित करने वाला है
हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था
सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉज़िटिव हो गए थे
लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों menएस डबल शटल कॉम्पिटिशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी में जुटे हैं
एक और खिलाड़ी से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा ये हैं हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक जी
मनीष जी खेतीकिसानी वाले परिवार से आते हैं
बचपन में खेतों में काम करतेकरते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था
आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है
एक और खिलाड़ी हैं सीए भवानी देवी जी
नाम भवानी है और ये तलवारबाजी में एक्सपर्ट हैं
चेन्नई की रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर हैं जिन्होंने ओलम्पिक में क्वालिफाई किया है
मैं कहीं पढ़ रहा था कि भवानी जी की ट्रेनिंग जारी रहे इसके लिए उनकी माँ ने अपने गहने तक गिरवी रख दिये थे
साथियो ऐसे तो अनगिनत नाम हैं लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ
टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है बरसों की मेहनत रही है
वो सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं जा रहें बल्कि देश के लिए जा रहे हैं
इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है और इसलिए मेरे देशवासियों मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूँ हमें जानेअनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है
सोशल मीडिया पर आप Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ दे सकते हैं
आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी ज़रूर करें
अगर आपको कोई ऐसा आईडीईए आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वो आप मुझे ज़रुर भेजिएगा
हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे Cheer4IndiaCheer4IndiaCheer4India
मेरे प्यारे देशवासियो कोरोना के खिलाफ़ हम देशवासियों की लड़ाई जारी हैलेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं
अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है
21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ़्त वैक्सीन लगाने का रेकॉर्ड भी बना दिया और वो भी एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ़्त वैक्सिनेशन और वो भी एक दिन में स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है
साथियो एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मादे इन इंडिया वैक्सीन मुफ़्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताक़त है
साथियोवैक्सीन की सेफटी देश के हर नागरिक को मिले हमें लगातार प्रयास करते रहना है
कई जगहों पर वैक्सीन हेसिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन सिविल सोसाइटी के लोग आगे आये हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
चलिये हम भी आज एक गाँव में चलते हैं औरउन्हीं लोगों से बात करते हैं वैक्सीन के बारे में मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के डुलारिया गाँव चलते हैं
नमस्ते जी
मेरा नाम राजेश हिरावे ग्राम पंचायत डुलारिया भीमपुर ब्लॉक
राजेश जी मैंने फ़ोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गाँव में अब कोरोना की क्या स्थिति है
सर यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ आई
अभी लोग बीमार नहीं हैं
गाँव की जनसँख्या कितनी है कितने लोग हैं गाँव में
गाँव में 462 पुरुष हैं और 332 महिला हैंसर
अच्छा राजेश जी आपने वैक्सीन ले ली क्या
नहीं सर अभी नहीं लिए हैं
अरे क्यों नहीं लिया
सर जी यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ WhatsApp पर ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी
तो क्या आपके मन में भी डर है
जी सर पूरे गाँव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर
अरे रे रे यह क्या बात की आपने देखिये राजेश जी
मेरा आपको भी और मेरे सभी गाँव के भाईबहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिये
जी
हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है
आपको पता है न मैंने खुद ने भी दोनों दोसे लगवा लिए हैं
अरे मेरी माँ तो क़रीबक़रीब 100 साल की हैं उन्होंने भी दोनों दोसे लगवा लिए हैं आई कभीकभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है पर वो बहुत मामूली होता है कुछ घंटो के लिए ही होता है
देखिए वैक्सीन नहीं लेना बहुत ख़तरनाक हो सकता है
इससे आप ख़ुद को तो ख़तरे में डालते ही हैं साथ ही में परिवार और गाँव को भी ख़तरे में डाल सकते हैं
और राजेश जी इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिये और गाँव में सबको बताइये कि भारत सरकार की तरफ से मुफ़्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए यह मुफ़्त वैक्सिनेशन है
तो ये आप भी लोगों को गाँव में बताइये और गाँव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है
कारण यही सर कुछ लोग ने ऐसी गलत अफ़वाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए उसका उदाहरण जैसे जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना बुखार से और बीमारी फ़ैल जाना मतलब आदमी की मौत हो जाना यहाँ तक की अफ़वाह फैलाई
ओहोहो देखिये आज तो इतने रेडियो इतने टीवी इतनी सारी खबरें मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है और देखिये मैं आपको बताऊँ भारत के अनेक गाँव ऐसे हैं जहाँ सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके है यानी गाँव के शत प्रतिशत लोग
जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ
कश्मीर में बांदीपुरा ज़िला है इस बांदीपुरा ज़िले में एक व्यवनWeyanगाँव के लोगों ने मिलकर 100 शत प्रतिशत वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया
आज कश्मीर के इस गाँव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं
नागालैंड के भी तीन गाँवों के बारे में मुझे पता चला कि वहाँ भी सभी लोगों ने 100 शत प्रतिशत टीका लगवा लिया है
राजेश जी आपको भी अपने गाँव अपने आसपास के गाँव में ये बात पहुँचानी चाहिये और आप भी जैसे कहते हैं ये भ्रम है बस ये भ्रम ही है
तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको ख़ुद को टीका लगा कर के समझाना पड़ेगा सबको
करेंगे न आप
पक्का करेंगे
जी सर जी सर
आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं ख़ुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊँ
अच्छा गाँव में और भी कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ
जी है सर
कौन बात करेगा
हेल्लो सर नमस्कार
नमस्ते जी कौन बोल रहे हैं
सर मेरा नाम है किशोरीलाल दूर्वे
तो किशोरीलाल जी अभी राजेश जी से बात हो रही थी
और वो तो बड़े दुखी हो करके बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलगअलग बातें करते हैं
आपने भी ऐसा सुना है क्या
हाँ सुना तो हूँ सर वैसा
क्या सुना है
क्योंकि ये है सर ये पास में महाराष्ट्र है उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अफ़वाह फैलाते कि वैक्सीन लगाने से लोग सब मर रहा है कोई बीमार हो रहा है कि सर लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर इसलिए नहीं ले रहे हैं
नहीं कहते क्या है अब कोरोना चला गया ऐसा कहते है
कोरोना से कुछ नहीं होता है ऐसा कहते है
नहीं कोरोना चला गया नहीं बोलते सर कोरोना तो है बोलते लेकिन वैक्सीन जो लेते उससे मतलब बीमारी हो रहा है सब मर रहे है
ये स्थिति बताते सर वो
अच्छा वैक्सीन के कारण मर रहे हैं
अपना क्षेत्र आदिवासीक्षेत्र है सर ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं जो भ्रम फैला देते कारण से लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन
देखिये किशोरीलाल जी
जी हाँ सर
ये अफ़वाहें फैलाने वाले लोग तो अफ़वाहें फैलाते रहेंगे
हमें तो ज़िन्दगी बचानी है अपने गाँव वालों को बचाना है अपने देशवासियों को बचाना है
और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए
ये बीमारी ऐसी है ये बहुरूपिये वाली है
वो रूप बदलती है नएनए रंगरूप कर के पहुँच जाती है
जी
और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं
एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया मास्क पहनना साबुन से बारबार हाथ धोना दूरी बनाए रखना और दूसरा रास्ता है इसके साथसाथ वैक्सीन का टीका लगवाना वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है तो उसकी चिंता करिए
अच्छा किशोरीलाल जी ये बताइये
जी सर
जब लोग आपसे बातें करते है तो आप कैसे समझाते है लोगों को आप समझाने का काम करते है कि आप भी अफ़वाह में आ जाते हैं
समझाएं क्या वो लोग ज्यादा हो जाते तो सर हम भी भयभीत में आ जाते न सर
देखिये किशोरीलाल जी मेरी आपसे बात हुई है आज आप मेरे साथी हैं
आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है
निकालेंगे सर लोगों के डर को भी निकालेंगे सर
मैं स्वयं भी ख़ुद लगाऊंगा
देखिये अफ़वाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें
आप जानते है हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके ये वैक्सीन बनाई है
साल भर रातदिन इतने बड़ेबड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है और इसलिए हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिये वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिये
और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बारबार समझाना चाहिये कि देखिये भई ऐसा नहीं होता है इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है कुछ नहीं होता है
और अफ़वाहों से बहुत बच करके रहना चाहिये गाँव को भी बचाना चाहिये
और राजेश जी किशोरीलाल जी आप जैसे साथियों को तो मैं कहूँगा कि आप अपने ही गाँव में नहीं और गाँवों में भी इन अफ़वाहों को रोकने का काम कीजिये और लोगों को बताइये मेरे से बात हुई है
जी सर
बता दीजिये मेरा नाम बता दीजिये
बताएँगे सर और समझायेंगे लोगों को और स्वयं भी लेंगे
देखिये आपके पूरे गाँव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिये
और सभी से कहिये कि जब भी अपना नंबर आये
वैक्सीन जरुर लगवाएं
ठीक है सर
मैं चाहूँगा कि गाँव की महिलाओं को हमारी माताओंबहनों को
इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िये और सक्रियता के साथ उनको साथ रखिये
कभी माताएँबहनें बात कहती है न लोग जल्दी मान जाते हैं
आपके गाँव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएँगे आप
हाँ बताएँगे सर
पक्का बताएँगे
देखिये मैं इंतज़ार करूँगा आपकी चिट्ठी का
चलिये राजेश जी किशोर जी बहुतबहुत धन्यवाद
आपसे बात करने का मौक़ा मिला
धन्यवाद सर आपने हमसे बात किया है
बहुतबहुत धन्यवाद आपको भी
साथियो कभीनाकभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गाँव के लोगों ने हमारे वनवासीआदिवासी भाईबहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया
गाँव के लोगों ने क्वारंटाइन centreबनाए स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए
गाँव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया खेती का काम भी रुकने नहीं दिया
नजदीक के शहरों में दूधसब्जियाँ ये सब हर रोज पहुंचता रहे ये भी गाँवों ने सुनिश्चित कियायानी ख़ुद को संभाला औरों को भी संभाला
ऐसे ही हमें वैक्सिनेशन अभियान में भी करते रहना है
हमें जागरूक रहना भी हैऔर जागरूक करना भी है
गांवों में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएयह हर गाँव का लक्ष्य होना चाहिए
याद रखिएऔर मैं तो आपको ख़ास रूप से कहना चाहता हूँ
आप एक सवाल अपने मन में पूछिये हर कोई सफल होना चाहता है लेकिन निर्णायक सफलता का मंत्र क्या है निर्णायक सफलता का मंत्र है निरंतरता
इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है किसी भ्रांति में नहीं रहना है
हमें सतत प्रयास करते रहना है कोरोना पर जीत हासिल करनी है
मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है
बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बरसते बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं
बारिश का पानी जमीन में जाकर इकठ्ठा भी होता है जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है
और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूँ
आपने भी देखा होगा हम में से कई लोग इस पुण्य को अपनी ज़िम्मेदारी मानकर लगे रहे हैं
ऐसे ही एक शख्स हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती जी
भारती जी एक शिक्षक हैं और उन्होंने अपने कार्यों से भी लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है
आज उनकी मेहनत से ही पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखाल क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट समाप्त हो गया है
जहाँ लोग पानी के लिए तरसते थे वहाँ आज सालभर जल की आपूर्ति हो रही है
साथियों पहाड़ों में जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीक़ा रहा है जिसे चालखाल भी कहा जाता है यानि पानी जमा करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदना
इस परंपरा में भारती जी ने कुछ नए तौर तरीकों को भी जोड़ दिया
उन्होंने लगातार छोटेबड़े तालाब बनवाये
इससे न सिर्फ उफरैंखाल की पहाड़ी हरीभरी हुई बल्कि लोगों की पेयजल की दिक्कत भी दूर हो गई
आप ये जानकर हैरान रह जायेंगे कि भारती जी ऐसी 30 हजार से अधिक जलतलैया बनवा चुके हैं
30 हजार उनका ये भागीरथ कार्य आज भी जारी है और अनेक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं
साथियों इसी तरह यूपी के बाँदा ज़िले में अन्धाव गाँव के लोगों ने भी एक अलग ही तरह का प्रयास किया है
उन्होंने अपने अभियान को बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है खेत का पानी खेत में गाँव का पानी गाँव में
इस अभियान के तहत गाँव के कई सौ बीघे खेतों में ऊँचीऊँची मेड़ बनाई गई है
इससे बारिश का पानी खेत में इकठ्ठा होने लगा और जमीन में जाने लगा
अब ये सब लोग खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने की भी योजना बना रहे हैं
यानि अब किसानों को पानी पेड़ और पैसा तीनों मिलेगा
अपने अच्छे कार्यों से पहचान तो उनके गाँव की दूरदूर तक वैसे भी हो रही है
साथियों इन सभी से प्रेरणा लेते हुए हम अपने आसपास जिस भी तरह से पानी बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए
मानसून के इस महत्वपूर्ण समय को हमें गंवाना नहीं है
मेरे प्यारे देशवासियों हमारे शास्त्रों में कहा गया है
नास्ति मूलम् अनौषधम्
अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति ही नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इसी विषय पर एक पत्र भी भेजा है
उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूँ कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइये
वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना है
इसी दिशा में मध्य प्रदेश के सतना के एक साथी हैं श्रीमान रामलोटन कुशवाहा जी उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है
रामलोटन जी ने अपने खेत में एक देशी म्यूज़ियम बनाया है
इस म्यूज़ियम में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है
इन्हें वो दूरसुदूर क्षेत्रों से यहाँ लेकर आए है
इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतीय सब्जियाँ भी उगाते हैं
रामलोटन जी की इस बगिया इस देशी म्यूज़ियम को लोग देखने भी आते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं
वाकई ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है जिसे देश के अलगअलग क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है
मैं चाहूँगा आपमें से जो लोग इस तरह का प्रयास कर सकते हैं वो ज़रूर करें
इससे आपकी आय के नए साधन भी खुल सकते हैं
एक लाभ ये भी होगा कि स्थानीय वनस्पतियों के माध्यम से आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी
मेरे प्यारे देशवासियों अब से कुछ दिनों बाद 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे
ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्मजयंती को समर्पित है
कोरोनाकाल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं
हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है
इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी ख़ास हो जाता है
साथियों मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था
व्हेरेवर थे आर्ट ओएफ मेडिसिन इस लव्ड थेरे इस अलसो आ लोव ओएफ ह्यूमैनिटी
यानि जहाँ आर्ट ओएफ मेडिसिन के लिए प्रेम होता है वहाँ मानवता के लिए भी प्रेम होता है
डॉक्टर्स इसी प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें उनका हौसला बढ़ाएँ
वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं
श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला
यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्वाइस की शुरुआत की गई
इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया जो एक हाउसबोट आउनर हैं
उन्होंने खुद भी COVID19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्वाइस शुरू करने के लिए प्रेरित किया
उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं
कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर ज़रूरी सावधानी बरतें
साथियों डॉक्टर्स डे के साथ ही एक जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है
मैंने कुछ वर्ष पहले देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से ग्लोबल लेवल की भारतीय ऑडिट फर्म्स का उपहार माँगा था
आज मैं उन्हें इसकी याद दिलाना चाहता हूँ
अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं
मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके परिवार के सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों कोरोना के खिलाफ़ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है
इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है
मैंने मन की बात में अक्सर इसका ज़िक्र किया है
लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है
अनेक लोग चाहे बैंक स्टाफ हो टीचर्स हों छोटे व्यापारी या दुकानदार हों दुकानों में काम करने वाले लोग हों रेहड़ीपटरी वाले भाईबहन हों सिक्यूरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट आफिस के कर्मचारी दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है
शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलगअलग स्तर पर जुटे रहे हैं
साथियों आपने संभवतः भारत सरकार में सचिव रहे गुरु प्रसाद महापात्रा जी का नाम सुना होगा
मैं आज मन की बात में उनका ज़िक्र भी करना चाहता हूँ
गुरुप्रसाद जी को कोरोना हो गया था वो अस्पताल में भर्ती थे और अपना कर्त्तव्य भी निभा रहे थे
देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढे दूरसुदूर इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचे इसके लिए उन्होंने दिनरात काम किया
एक तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर मीडिया का प्रेशर एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ते रहे बीमारी के दौरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया
मना करने के बाद भी वो ज़िद करके ऑक्सीजन पर होने वाली वीडियों कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो जाते थे
देशवासियों की इतनी चिंता थी उन्हें
वो अस्पताल के बेद पर खुद की परवाह किए बिना देश के लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इंतजाम में जुटे रहे
हम सबके लिए दुखद है कि इस कर्मयोगी को भी देश ने खो दिया है कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया है
ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी चर्चा कभी हो नहीं पाई
ऐसे हर व्यक्ति को हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें वैक्सीन ज़रुर लगवाएं
मेरे प्यारे देशवासियों मन की बात की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मुझसे ज्यादा आप सबका योगदान रहता है
अभी मैंने माइगोव में एक पोस्ट देखी जो चेन्नई के थिरु आरगुरुप्रसाद जी की है
उन्होंने जो लिखा है वो जानकर आपको भी अच्छा लगेगा
उन्होंने लिखा है कि वो मन की बात प्रोग्राम के रेग्यूलर लिस्टेनर हैं
गुरुप्रसाद जी की पोस्ट से अब मैं कुछ पंक्तियाँ क्वोट कर रहा हूँ
उन्होंने लिखा है
जब भी आप तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है
आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महानता तमिल त्योहारों और तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों की चर्चा की है
गुरु प्रसाद जी आगे लिखते हैं कि मन की बात में मैंने तमिलनाडु के लोगों की उपलब्धियों के बारे में भी कई बार बताया है
तिरुक्कुरल के प्रति आपके प्यार और तिरुवल्लुवर जी के प्रति आपके आदर का तो कहना ही क्या इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिलनाडु के बारे में बोला है उन सबको संकलित कर एक ईबुक तैयार की है
क्या आप इस ईबुक को लेकर कुछ बोलेंगे और इसे NamoApp पर भी रिलीज करेंगे धन्यवाद
ये मैं गुरुप्रसाद जी का पत्र आप के सामने पढ़ रहा था
गुरुप्रसाद जी आपकी ये पोस्ट पढ़कर बहुत आनंद आया
अब आप अपनी ईबुक में एक और पेज जोड़ दीजिये
नान तमिलकला चाराक्तिन पेरिये अभिमानी
नान उलगतलये पलमायां तमिल मोलियन पेरिये अभिमानी
उच्चारण का दोष अवश्य होगा लेकिन मेरा प्रयास और मेरा प्रेम कभी भी कम नहीं होगा
जो तमिलभाषी नहीं हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ गुरुप्रसाद जी को मैंने कहा है
मैं तमिल संस्कृति का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ
मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल का बड़ा प्रशंसक हूँ
साथियों हर हिन्दुस्तानी को विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे देश की है इसका गुणगान करना ही चाहिए उस पर गर्व महसूस करना चाहिए
मैं भी तमिल को लेकर बहुत गर्व करता हूँ
गुरु प्रसाद जी आपका ये प्रयास मेरे लिए नई दृष्टि देने वाला है
क्योंकि मैं मन की बात करता हूँ तो सहजसरल तरीक़े से अपनी बात रखता हूँ
मुझे नहीं मालूम था कि इसका ये भी एक एलिमेंट था
आपने जब पुरानी सारी बातों को इकठ्ठा किया तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि दो बार पढ़ा
गुरुप्रसाद जी आपकी इस बुक को मैं NamoApp पर जरुर अपलोड करवाऊंगा
भविष्य के प्रयासों के लिए आपको बहुतबहुत शुभकामनायें
मेरे प्यारे देशवासियोंआज हमने कोरोना की कठिनाइयों और सावधानियों पर बात की देश और देशवासियों की कई उपलब्धियों पर भी चर्चा की
अब एक और बड़ा अवसर भी हमारे सामने है
15 अगस्त भी आने वाला है
आज़ादी के 75 वर्ष का अमृतमहोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है
हम देश के लिए जीना सीखें
आज़ादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है
आज़ादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है
हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट
हमारे हर फ़ैसले हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया First
साथियों अमृतमहोत्सव में देश ने कई सामूहिक लक्ष्य भी तय किए हैं
जैसे हमें अपने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करना है
आपको याद होगा कि मन की बात में मैंने युवाओं से स्वाधीनता संग्राम पर इतिहास लेखन करके शोध करने इसकी अपील की थी
मक़सद यह था कि युवा प्रतिभाएं आगे आए युवासोच युवाविचार सामने आए युवा कलम नई ऊर्जा के साथ लेखन करे
मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम समय में ढाई हज़ार से ज्यादा युवा इस काम को करने के लिए आगे आए हैं
साथियों दिलचस्प बात ये है 19वीं 20 वीं शताब्दी की जंग की बात तो आमतौर पर होती रहती है लेकिन ख़ुशी इस बात की है कि 21वीं सदी में जो युवक पैदा हुए हैं 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है ऐसे मेरे नौजवान साथियों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी की आज़ादी की जंग को लोगों के सामने रखने का मोर्चा संभाला है
इन सभी लोगों ने माइगोव पर इसका पूरा ब्यौरा भेजा है
ये लोग हिंदी इंग्लिश तमिल कन्नड़ा बांग्ला तेलुगू मराठी मलयालम गुजराती ऐसी देश की अलगअलग भाषाओँ में स्वाधीनता संग्राम पर लिखेंगें
कोई स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे अपने आसपास के स्थानों की जानकारी जुटा रहा है तो कोई आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों पर किताब लिख रहा है
एक अच्छी शुरुआत है
मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अमृतमहोत्सव से जैसे भी जुड़ सकते हैं ज़रुर जुड़े
ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष के पर्व का साक्षी बन रहे हैं
इसलिए अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो अमृतमहोत्सव की और तैयारियों पर भी बात करेंगे
आप सब स्वस्थ रहिए कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए अपने नएनए प्रयासों से देश को ऐसे ही गति देते रहिए
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद